इस चित्र में हमें तीन आदमी दिख रहे हैं तीन औरतें दिख रही हैं एक किताब दिख रही है पर्दा दिख रहा है खिड़कियां दिख रही हैं एक बोटल दिख रही है ए.सी. दिख रहा है।

इस चित्र में हमें तीन बच्चे खड़े हुए दिखाई कुर्सियां दिख रही हैं औरतें बैठी हुई दिख रही हैं पेड़ दिख रहे हैं जालियां दिख रही हैं घास दिख रही है।

इस चित्र मीन हमें चार पाँच आदमी दिख रहें हैं घर देख रहा है लोहे दिक रहें हैं खंबा दिख रहा है एक मशीन दिक रही--

इस चित्र में कुर्सियाँ दिख रही हैं काउन्टर दिख रहे हैं छत पर लाइटें दिख रही हैं परदे दिख रहे हैं खिड़कियां दिख रही हैं जमीन दिख रही है छत के उपर लाइटें लगी हुई --

इस चित्र में हमें एक गाडी दिख रही है पत्थर दिख रहे हैं एक आदमी का सर दिख रहा है हात दिख रहे है टायर दिख रहे हैं लाइट दिख रही है।

इस चित्र में एक आटो दिख रहा है तीन आदमी दिख रहे हैं आटो का कांच दिख रहा है सीमट कि रेलिंग दिख रही है सड़क दिख रही है बिजली के खम्बे दिख रहे हैं।

इस चित्र मे एक आदमी दिख रहा है एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है कुर्सियां दिख रही हैं कांच का दरवाजा दिख रहा है लाइटे दिख रही है एक गाड़ी दिख रही है एक शटर दिख रहा है कपड़े दिख रहे हैं।

इस चित्र मे एक आदमी लेटा हुआ दिख रहा है एक पीला पर्दा दिख रहा है तकिया दिख रहा है एक चादर दिख रही है एक बिजली का तार दिख रहा है अंगूठियाँ दिख रही हैं।